और यहाँ लग रहा है की कोई सिस्टम फैक्ट्री है जो की यहाँ बालू का यूज़ हो रहा है या यहाँ बन ही रहा होगा फैक्ट्री के कारण दिखाई जा रहा है बाकी सभी हैं।

एक छोटी सी लड़की ल दिखाई दे रहे है उसके माथे में एक--

इसमें लिखा है।

रेस्टोरेंट में कुरकुरे और पानी के जग और एक नमक के डब्बा है और उसमे रेस्टोरेंट मे टूल वगैरा लगये गए है चेयर भी दिखाई गए है और उसमे वाटर बॉटल भी है